के बाहर गाड़ी भी खड़ी है और छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

केशरी रंग के झण्डे भी दिखाई दे रहे हैं आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे पीले रंग का घर दिखाई दे रहा है जिसके दिवालो का रंग पीले है बहार काले रंग की कुर्शियाँ रखी हुई है।

उसके ऊपर लोग बेठे हुए है यहाँ पर एक आ आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग का --

काले सफ़ेद रंग का बोर्ड है यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ पे एक जाली दिखाई दे रही है जो काले रंग की है।

यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है। जिसके दीवारों के ऊपर फोटो लगाए हुए हैं।

यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो खाना खा रहे हैं।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।